पिछाड़ी बिटिन और डूंगा भीन मोटा मोटा जु चमलाण छन लंग्या और मोटु मोटु जु छा एक और डूंगा छा।

यख आधार कार्ड या अपडेट होंदन यू जब कुर्सी लगाईं येपर भेर बिटिन काली रंग की और एक जो टेबल च लगायुं जैपर यु आदमी काम च कन्नु नीसाण बीटिन फ्लोर छ लगाईं जू चेक वाली छन।

और जू य आदमी सा सामणी बिटिन दिखेणु एक पिंक रंग का पोसाक यानि गुलाबी रंग का पोशाक छ पेनी। एक बेरवान छ वीकी सफ़ेद रंग कु कोट छ पह्नयु और मुस्कु छ लगायुं।

कुछ समान लैयण और येकी टोपली शर्ट छ पैनी पगड़ी कर छ सफेद रंग की पैनी अर बंडी भी छ पैनी सफ़ेद रंग की।

एक आदमी मोबाइल पर छेड़येणु और एक आदमी बाइक लीक छा जाणु दुई बाइक साइडम खड़ी छ होईं जु की खली छन तारोंन जु कुछ छा उलझयूं छा।

पिछाड़ी बिटिन जु छा घर वो सफ़ेद रंग कु अर ये कि बाउंड्री नीली रंग की छा।

सजोंण ताकि कै ता घाम न लगो पिछाड़ी बिटिन जु छ घाम भी यूं तें लगणु अर सूरज जु छ वु चमलाण छ लग्युं ये की परछाई पाणी पर छ पणी पिछाड़ी मा एक आइलैंड या पहाड़ कर छ दिखेणु जु की पाणी का पिछाड़ी छ।

पिछाड़ी बिटिन जु बाबा खातिर चार पांच जनाना लोग जु खड़ा छन होयां बाबा की रक्षा पिछाड़ी बिटिन होर लोग भी छिन जनता इक्ट्ठी छ होईं नीसाण बिटिन दरी छे लगाईं।

अर कुर्सी छा ये पर लगीं पिछाड़ी जू स्कूल कर छ लग्णुं ये पठार छ दिखेणी पिछाड़ी और जू छ घास वगैरह भी दिखेणी छोटी-छोटी ।